इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तस्वीर खींची गई है जो कि --

जिसमें से कुछ कारीगर घर बना रहे हैं।

जोकि कई सारे फूल मालाओं की है।

इस चित्र में थम देख सकते है की यहां पर ये--

डेकोरेशन के सामान पड़े हैं और वह ब्लू रंग--

और कुछ भैसे भी चल रही है और पास में ही एक अंकल ने--

तार लगी हुई है आस पास खूब हरियाली भी--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

पाव भाजी सेंटर की है इस पाव भाजी सेंटर में पुलाव चाट--

यहां पर एक सामने की तरफ आएना भी लगा हुआ है।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

जो की एक शादी में टेबल प अ टेबल के पास में कुर्सियाँ लगी वहीं की हैं।

ले है और सामने की तरफ ही एक बस भी रखी हुई है।

जहां पर से पहाड़ी का पहाड़ी पे से पानी गिरने का--

जोकि एक सनसेट की हैं और यहां पर कई सारी बिल्डिंगे भी है।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

ढाबे की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है।